यहाँ आधार इनरोलमेंट अपडेट सेंटर है।

यहाँ बहुत दूर-दूर से आते हैं लोग जिम करने।

और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

ये रेलवे स्टेशन है।

ये बैंक ए.टी.एम. है और यहाँ सारे लोग अपना --

इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और सबको जिसको जो मन है वो झूल रहें हैं।

ये होटल है और इसका नाम है होटल अकाशा ठहरने एवं उत्सव --

कोल्ड ड्रिंक पिने के लिए यहाँ --